अगरबत्तियां लगाई हुई है और यहाँ पर नीचे कुछ सामान पड़ा हुआ है और यहाँ पर कई सारे लोग खड़े हुए हैं बड़ी सी बिल्डिंग है।

यहां पर इस साइड पर एक मंदिर है जिस पर एक मूर्ति बनाई गई है।